ग्राउड़ दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे लोग ग्राउंड में दिखाई दे रहा है।

बाजु मे कुछ खेत दिखाई दे रहे है उपर आसमान दिखाई दे रहा है इवनिंग का टाइम दिखाई दे रहा है सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है बाजु में कुछ बिल्डिंग और--

यहा पे मशीन ब्लैक की दिखाई दे रही है ऊपर लाइटइंग लगी दिखाई दे रही है लाइटइंग का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ी खिड़की दिखाई दे रही है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में रंग बिरंगी कलर की मूर्तिया रखी दिखाई दे रही है ऊपर वाइट आसमान दिख रहा है सामने एक ग्राउंड दिख रहा है।

और कुछ घर दिखाई दे रहे है और आसपास और ऊपर लाइटिंग दिखाई दे रही है और आजू बाजू कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है ।